साथ ही में आई_बी स्टूडियो का लोगो भी बना हुआ है।

शराब की दुकान का नाम अंग्रेजी शराब दुकान है।

दूर से छोटे मोटे पहाड़ बड़े खूबसूरत दिखाई दे रहे हैं।

बैनर लगा हुआ है बैनर अल्ट्राटेक सीमेंट का है।

पानी के आस पास हरी भरी हरियाली है।

बिल्डिंग के सामने मजदूर खड़ा हुआ है बिल्डिंग --

एम_पी ऑनलाइन मध्य प्रदेश सरकार का पोर्टल बोर्ड है।

इस शॉप का नाम श्री पास ज्वेलर्स है।

टेबल और कुर्सियों का अरेंजमेंट दिख रहा है।

एक तरफ एक सफेद रंग की एक्टिवा नजर आ रही है।

कुछ साड़ियां डिस्प्ले पर लगी हुई है साड़ियों की दुकान के बाजू एक और दुकान दिख रही है।